कार नजर आ रही है कार वॉश का पाइप नजर आ रहा है अ मशीन नजर आ रही है।

कुछ ब्रिज नजर आ रहा है ब्रिज के नीचे है पानी नजर आ रहा है और इस तरफ से कुछ रोड नजर आ रहा है।

और पेड़ पौधे पेड़ पौधे में थोड़े-थोड़े हैं।

पुल नजर आ रहा है पानी नजर आ रहा है पेड़-पौधे नजर आ रहे है।